ये ईट लाल और पीले रंग की है।

ये सामने एक काले रंग की गाड़ी दिख रही है।

एक टेबल पर बहुत सारी बुक --